इस छवि में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में कई सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में कुछ झंडे और बाउंड्री दिखाई दे रही है।

इस छवि में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।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

इस छवि में कुछ पौधे भी हैं।

इस छवि में साइन बोर्ड पे गेटवे टू गुडनेस लिखा हुआ है।

तस्वीर में मछलियां दिखाई दे रही हैं।

पीछे व्यू में एक मनुष्य दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पे ड्रीम बिग शब्द लिखा हुआ है।

इस छवि में कुछ पेड़ पौधे भी है।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

इस तस्वीर में एक साइन बोर्ड पर भूमलेग लिखा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कुछ पेड़ पौधे दिखाए गए हैं।

इस छवि में कुछ पेड़ पौधे भी दिखाया गया है।